इकट्ठा यहाँ पर और दो आदमी बैठे हुए है जमींन पर--

जैसा की मैं यहाँ देख पा रही हूं यह एक तोप है जिसका रंग जो है वो काला है नीचे की जो दीवार है--

यहाँ की जो बिल्डिंग है वो सफेद रंग की है और यहाँ पर शीशा लगा है जो की काले रंग का है।

जो कि घास का रंग हरा है तथा पत्थर का रंग सिलेटी है।

ऑटो लिखा हुआ है तथा यहाँ की जो दीवार हैं वो सफेद रंग की है आसमान का रंग सफेद तथा नीला है।

तथा यहाँ पर बैनर लगे हुए है बहुत सारे रात्रि का समय है।

पेड़ पौधे लगे हुए है आसमान का रंग नीला तथा सफेद है।

तथा यहाँ पर एक बोलेरो खड़ी है।

आदमी औरत ने लाल कलर की साड़ी पहन रखे है तथा आदमी ने भूरे--

और यहाँ पर एक आंटी है जिन्होंने झाड़ू लिए है।

ऊपर की छत सफ़ेद रंग की है एक लड़की बैठी है जिसने--

तथा आसमान नीला और सफेद हे यहाँ पर।

जोकि यहाँ पर भूरे रंग का है तथा यहाँ पर काले कलर की एक छत दिख रही हैं।

वहाँ पर पहाड़ में पेड़ उगे हुए है जोकि हरे तथा काले रंग के आसमान नीला--